इस वीडियो में सामने एक इमारत है।

और इमारत के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

वहीं गोला अ गमले के पास खड़ा हुआ है।

दिख रहा है और उसमें कुछ बहुत से लोग दिख रहे हैं।